जिस तस्वीर पर एक कच्चा बार दिखाया गया है जिसके अंदर बहोत सारा लाइन लगाया हुआ है।

बड़ा सा एक नदी भी दिख रहा है।

रैक का रंग जो सफेद है और उसके अंदर बहोत सारे सामान भी रखे हुए हैं।

इस दुकान पर दो बच्चे बैठे हुए हैं इन दोनों के शक्ल को भी ब्लर किया गया है।

और यहाँ पर ये बैड लगाया हुआ है जिसके ऊपर नीला कपड़ा ढका हुआ है।

मुझे तस्वीर पर एक बहोत सुंदर सा बगीचा दिखाया गया है।

मुझे इस तस्वीर पर अलग अलग शॉप दिखाया गया है।

के बाहर एक बाइक भी रखा हुआ है।

और एक इंसान कुत्ता को लेकर भाग रहा है।

और यहां पर स्ट्रीट लाइट भी लगाया हुआ है।

खुला आसमान भी दिख रहा है।

नदी के साइड पर बड़े बड़े पत्थर भी दिख रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर पर एक मॉल आधा हिस्सा दिखाया गया है जहां पर बहोत सारे कपड़ों को टंगाया गया है।

एक रास्ते पर तो इंसान भी चल रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर रास्ता दिखाया गया है और यहां पर सीमेंट से बना हुआ गेट भी है।

यहां बहुत सारे कपड़े टंगाये गए है और कुछ को फोल्ड कर कर रखे गए हैं। एक के ऊपर एक।

उन दोनों का शक्ल को भी ब्लर किया गया है।

बादलों से घिरा हुआ आसमान दिख रहा है।

यहां पर छोटे छोटे फ्लावर पॉट रखे हुए हैं और उन पर आर्टिफिशियल फ्लावर लगाया गया है।

और ग्राउंड में बहुत सारा सूखा पत्ता भी गिरा हुआ है।

और ऊपर से बहोत सारे चीज गिर रहे हैं नीचे।

इन लोगों ने हाथ से पोज दिया हुआ है।